और एक तैवेल पेहना हुआ है डॉक्टर के कपड़े व्हाइट करें हैं।

मंदिर के ऊपर झंडे लगे हुए--

मंदिर के आस पास में हरियाली भरे पेड़ भी लगे हुए हैं और पास में बाइक भी पार्क है।

जिसके अंदर बहोत सामने सामान रखे हुए हैं जैसे की सोकेट स्विच --

पास में ही एक प्रिंटर रखा हुआ है एक सी_पी_यू रखा हुआ है।

बाहर बैठ कर कीबोर्ड और माउस के जरिए कुछ वर्क कर रहा है।

चारपाई वगैरह पे कुछ सामान लेकर बैठे हैं आसपास में बहुत सारी पब्लिक है।